यहां एक बच्चा है जिसका टी_शर्ट का रंग हरा है।

यहां बाइक का रंग ब्लैक है और एक स्कूटी का रंग सफेद है।

और यहां ब्लैक रंग की स्टीकर रखी हुई है।

यह एक मकान के बाहर का दृश्य है जिसका रंग पीला और सफेद है।

बहुत सारी लेडिस खड़े हैं ।

यह एक कपड़े की दुकान का दृश्य है जहां एक लाल रंग की सूट पहना हुआ डमी --

यहा की दीवार मे ए_सी लगा हुआ है।

यहां एक वाइट कलर का पंखा भी लगा हुआ है।

यह एक बड़े हाल का दृश्य है।

छोटे छोटे स्पीकर्स लगे हुए हैं दीवालों में।

और यहां एक हरी रंग की बोर्ड लगी हुई है।

अ ऊपर एक पेड़ पौधा लगाया गया है जिसका रंग हरा है।

यहां बहुत सारी लाइट लगाए हुए हैं जिसका रंग सफेद है।

यह सामने एक वाइट कलर की बोर्ड है।

जी येलो रंग से पेंटिंग करके लिखा गया है।